पुरुष पेनिस खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

लाइट की सजावट दिखाई दे र--

इस फोटो में मुझे फ्लाइट दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे ट्रेन दिखाई दे रहा है।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

पत्थर की छोटी बड़ी चट्टानें दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे जीप दिखाई दे रही है।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

मैदान दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कार दिखाई दे रहा है।

फोटो मे मुझे सीढ़िया दिखाइ दे रही हैं।